घर का सामने में जो एक राम दिखाई दे रहा है और वो भी ब्लैक कलर का है।

जो बड़ा सा भुज है और उसका ऊपर से भी कुछ धुआं निकल रहा है।

रास्ता भी दिखाई दे रहा है और वॉल भी दिखाई दे रहा है।

फ्लावर पॉच भी है और उसमें जो छोटा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।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

कुछ नर्सी भी दिखाई दे रहा और एक तार जैसा भी दिखाई दे रहा है।

में जो एक बरा सा मशीन है और वो भी पत्थर फोड़ने का मशीन है।

यह जो एक दुकान है और दुकान के अंदर में जो बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है।

गनीचे में जो कुछ कपरा जैसा भी दिखाई दे रहा है और कुछ किताब भी दिखाई दे रहा है।

यहां में जो एक घर दिखाई दे रहा है और घर का सामने में भी एक ट्रैक्टर आ के है।

बहोत जादा घास भी निकल के हैं और वो भी ग्रीन कलर में हैं।

हमें जो कुछ मेला जैसा दिखाई दे रहा है और इसमें जो बहुत ज्यादा खेलने का चीज भी दिखाई दे रहा है।

दो बोटन दिखाई दे रहा है और उसका नीचे में भी कुछ प्लास्टिक जैसा रखा हुआ है।

वो जो एक अ एक टेबल का ऊपर में जो कुछ सामान रखा हुआ है वो जो मेकअप करने वाला समान है।

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है और एक लरका जो गंजी पेन के है।

का सामने में जो कुछ चड्डी का बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

इसमें जो एक पिलर भी दिखाई दे रहे हैं और वॉल जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं।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

पोस्टर में जो संगीत इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है और उसके आगे में जो अ कुछ कार्टून जो उसको बांध के रखा हुआ है।

भी एक टैंकी जैसा है और उसका टायर भी दिखाई दे रहा है और टायर का पीछे में नीचे में जो एक पत्थर भी है।

और सामने में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और एक दर्शी भी है।

इसका नीचे में भी कुछ कौन भी दिखाई दे रहा है और उसका टायर भी दिखाई दे रहा है।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

सामने में जो बहुत ज्यादा पेड़ पौधे भी हैं और आसमान जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है।

यहां में जो बहुत ज्यादा पेपर दिखाई दे रहा है और वो भी अ अलग अलग पेपर है।